बहुत सारे झाड़ियाँ हैं पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक फोर वीलर खड़ी करने का जगह हैं जहाँ पर दो गाड़ी खड़ी हुई हैं ऊपर छत भी हैं चारों तरफ दीवाल है दीवाल पे वाइट कलर का पेंट किया गया है।

मकान है मकान के पीछे पेड़ पौधे हैं एक मकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ बोर्ड पे कुछ लिखा गया है।

खंबा में खंबा पे बिजली का भी बल्ब लगा हुआ है बहुत अच्छा दृश्य है।

यहाँ बहुत सारे बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये एक दुकान है दुकान में बहुत सारे समान टंगे हुए भी हैं।

या एक कमरा है कमरा में बहुत सारे मशीन रखी गई हैं।

घर हैं घर के सामने एक दूसरी दीवाल पर पयो कुछ--

यहाँ शैट्रिंग की जा रही हैं शैट्रिंग में छड़ और गिटी सीमेंट भी हैं यहाँ बहुत सारे पाइप भी हैं यहाँ बहुत सारा समान भी है।

पत्तियाँ भी लटकी हुई हैं जाली हुई हैं।

ऊपर आसमान साफ दिखाई दे रहा है और नदी में पानी भी है।

बादल छाए हुए हैं पेंड़ भी हैं पेंड़ जो ब्लैक दिख रहा है।

नीचे नदी में भी एल बादल के कारण रंग बिरंगे पानी में अ नजर आ रहा है।

यहाँ जमीन में खुदाई हो रही है खुदाई करके --

बड़ी बड़ी मशीन भी हैं और बगल में भी सामान रखा गया है।

एक पुराना घर है घर के ठीक सामने --

दुकान के ठीक बगल में म्मम --

अम्म फर्श पे भी कालीन बिछी हुई है।

खालीन बिछी हुई है एक स्टैंड वाले फ फैन हैं एक दीवार में ऊपर लगी हुई है।

पेंटिंग टंगी हुई हैं पर्दा भी लगा हुआ है चारों तरफ से --

ये ये बड़ा कमरा है कमरे में चारों तरफ से लेडीज लोग बैठी हुई है ओ बैठकर अपना अपना --

मेज भी बुआ हैं कुर्सी भी है सभी लोग बैठे हैं।

मशीन भी हैं ऊपर ए_शी भी लगी हुई है।

हर बेड के ठीक सामने मशीन लगी हुई है।

यह रोड है रोड के कम्म ठीक बगल में दुकान हैं दुकान को --

घरी घास हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं मकान भी है मकान के बाहर खंबाई के भी बना हुआ है।